यह एक कमरा है और यहां पर बहुत सारी ऐ सी धरी हुई है।

और तीन बच्चों के फोटो भी हैं।

और यहां पर गत्ते की पेटी और कुछ समान भी है।

और कुछ दुकानें भी है।

और बहुत सारी साइकल भी है।

और बहुत सारे पेड़ भी हैं।